यहां पे टाइल्स लगे हुए हैं जिसका कलर रेड और व्हाइट है और यहां पे कुछ सीवर पाइप लगे हुए हैं।

अंदर कुछ जीने जा रहे हैं और अंदर येलो येलो कुछ--

यहां पे एक नारियल का पेड़ लगा है उसके पीछे एक छोटे पार्क बना है वोही पे झूले लगे हुए हैं।

यह एक लखनऊ का इमामबाड़ी की इमेज है पीछे बहुत बड़ा इमामबाड़ा है।

टीले महज़िद है यहां पे दो तीन खंभे दिख रहे हैं।

जो कि छोटे छोटे पेड़ पेड़ दिख रहे हैं।

जहां पर कई सारी बाईकें खड़ी हुई हैं क्लासिक और स्टैंडर्ड यहां पे एक ग्लास वॉल लगी हुई जिसके अंदर बाहर का एरिया दिख रहा है।

जो मार्बल टाइल्स से बनाई गई इसकी इसकी इसका फ्लोर है और वो दिख नहीं रही है हुई पड़ी है।

मेट्रो की पटरी दिखती हुई जा रही है ग्रीन का पाइप दिखता हुआ जा रहा है।

यह एक कार है जिसका बोनट और टायर खुला हुआ है।

यह एक बड़ा सा ऑफिस है जिसकी ओपनिंग हुई है।

पीछे एक इंडिया मैप बना हुआ है और वहां पर एक--

पीछे से पानी आ रहा है ये दोपहर का मौसम है और--

तीन पेड़ लगे हुए हैं नारियल और एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है।

जो जिसपे बिस्सा वीशा लिखा हुआ है और यहां सामने ए एक आदमी खड़ा फोटो हुआ है हिचा रहा है बस काफी सजी हुई है।

बस में दो शीशे है बस गोल्डन कलर की है उसको सजाया गया है गेंदे के फूल से।

यहां बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है जो एक डॉक्टर की डॉक्टर के लिए में रखा होता है।

अ टेबल के ऊपर एक ब्लू कलर की ब्लू कलर बोतल और एक मादा की बोतल रखी है। यहाँ पर्दा रेड कलर का लगा हुआ है।

और यहा बहोत सारे टमाटर हैं कुछ ज्यादा लाल है और कुछ कच्चे हैं और थोड़े सड़ गए --

यह एक यामाहा का सर्विस सेंटर है।

ये कीसी कैफे की इमेज है रेस्टोरेंट की जहां पर कई सारे लोग बैठकर खाना पीना खा रहे हैं।

वुड कलर है और चेयर इस की वाइट अह ब्लू ग्रीन कलर में और यहां पे कुछ सोफा चेयर भी रखी हुई हैं।

और लेफ्ट साइड में इसकी एन छोटी सी एंट्रेंस है जहां पर एक सिक्युरिटी गार्ड सिक्युरिटी के लै लगा है। यहां पे एक और एक और मा माली लगा हुआ है जो पेड़ पानी देता है।

चार खंभे लगे हैं जिसके ऊपर और ये वाइट कलर हैं।

यह एक चर्च की इमेज है जहां पर कई लोग पूजा पाठ कर रहे हैं।

पीछे एक मूर्ति लगी हुई है और यहां पे फादर है।

पूरा व्हाईट कलर में है ऊपर कुछ पिलर हैं ब्राउन कलर में।

इसके ऊपर लाइटें लगी हैं। दोपहर का मौसम हो रहा है। पीछे एक तार जा रही। इसके ऊपर यहां जहां पे खंभा लगा है।

बिल्डिंग में थोड़े मकान है व्हाइट कलर के।

यहां पर पूरी तीन दुकानें लगी हैं जहां पर तीनों के पास--

आम संतरे खरबूजे और बहोत कुछ रेड कलर की है।

यहां पे एक पंखा यहां पे स्विच बोर्ड भी पीछे एक अलमीरा रखी जिसके अंदर कॉपी किताबें फाइले रखी हुई हैं।

यहां की रोड थोड़ी गीली है यहां पर बारिश का मौसम हो चुका है।

नीचे रोड है उस साइड जैसे भी रोड है यहां पे कुछ लोग भी खड़े हैं।

ये नर्सरी की इमेज है जहां पर पेड़ पौधे और फूल फूल पत्ते मिलते हैं।

और पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और राइट लेफ्ट साइड में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

ये कोई छोटा पार्क का एरिया दिख रहा है।

यह फैक्टरी इमेज है जहां पर एक आदमी सेल्फी लेके फैक्टरी की फोटो ले रहा है। पीछे एक और आदमी जा रहा है।

देवी की पूजा का फंक्शन हो रहा है।

पंडित जी हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

किसी रेलवे स्टेशन सीन है जहां पर एक ब्रिज जा रहा है।

यहां पर कई सारे गाय भैंस बंधी है पीछे कुछ व्यापारी खड़े हैं जो गाय भैंस खरीदने आए हैं।

ये कोई रेस्टोरेंट या कैफे का इमेज है जहां पर--

ये लोग खाना पीना खा रहे हैं इसको सही ये बहुत अच्छे डेकोरेट हुआ पड़ा है ऊपर झूमर लगे हुए हैं।

जो क्रीम कलर की है यहां मोदी की फोटो लगी हुई है और यहां वॉल बाउंड्री खींची हुई है एक।